बड़े बड़े दरवाजे भी है इस रूम को देखने में काफी अच्छा लगता है।

वी टू मॉल ये इसमें ठंडे के कपड़े रखे हुए हैं जैसे की जैकेट्स है ट्राउजर्स है।

इस पूल के पास बहुत सारे लोग हैं यहां पर तीन नाव भी दिख रहे हैं जिन पर नाव पर बैठ कर लोग यहां पे घुम सकते हैं।

और यहां पर छे बच्चे हैं इन छे बच्चे एक्सरसाइज --

और यहां पर एक शटर है जहां को जिसको हम लोग गेट भी बोल सकते हैं।

इसका जो दीवाल है वो दीवाल का जो रंग है वो उजला कलर का रंग है।

दूसरा है हल्का पीले कलर का है जो कि नीचे है यहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड भी दिए हुए हैं जहां पे अपने--

जगह बनाया होगा यह जगह बेंच जैसे दिख रहे हैं बेंच है बनाया हुआ।

आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स भी दिख रहे हैं और ठेला पर एक इटा भी रखा हुआ है।

ये फोटो में एक एक्वेरियम दिख रहा है चार एक्वेरियम है चारों में पानी भरा हुआ है।

और यहां पर तीन लड़के भी दिखाई दे रहे हैं अंदर की ओर।

इस रूम का जो कलर है वो पीला कलर का है ये रूम इस रूम का जो फ्लोर का कलर है वो हल्का ब्राउन कलर का ऑरेंज टाइप में फ्लोर है।

और उन उनके कुछ पेरेंट्स है वो पीछे की तरफ है वहां पे एक ब्लू कलर का और कुछ खेलने का ही--

थोड़ा सा डरावना जैसा भी यह रूम लग रहा है यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट का भी यूज़ किया गया है और उजले कलर के लाइट का --

रखे हुए हैं और एक आदमी खड़ा है अपनी--